वहां पे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है और एक कुत्ता पानी पी रहा है।